और बढ़ा नजर आ रहा है बारिश हुई हुई है ऑटो के टायर नजर आ रहे हैं।

सामने में एक बड़ा सा रूम नजर आ रहा है रूम के फ्लोर पे मैट पिछा हुआ है।

योगा कर रही है सामने में देख के दीवार का रंग सफेद है।

सामने में एक मैदान नजर आ रहा है यह मैदान पहाड़ी इलाका है यहां पे सामने में पहाड़ नजर आ रहे हैं आसमान साफ ये--

फ्लाईओवर के नीचे में सच्चा सर्वेक्षण दो हजार बाइस लिखा हुआ है ये लेडीज की पिक्चर बनी हुई है कुछ रहागीर इस पिक्चर के नजदीक से गुजर रहे हैं।

जो पोस्टर लगे हुए हैं पिक्चर लगी हुई है ऊपर डाउन सीलिंग में लाइटिंग नजर आ रही है साइड में विंडो नजर आ रही है।

यह इलेक्ट्रॉनिक शॉप है इस पे संगीता इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है।

यहां पे ओनिडा टाटा स्काई और जीरो परसेंट पे ई_एम_आई लिखा हुआ है।

स्कूल की लॉबी नजर आ रही है स्कूल में बहुत से पिलर नजर आ रहे हैं छत पे बहुत अच्छी कलाकृति की हुई है।

यहां पे एक दरबार नजर आ रहा है दीवा दरबार में बहुत पुरा प्राचीन--

यहां पे एक ग्राउंड नजर आ रहा है यह ग्राउंड स्कूल का है यहां पे मन दो मंजिला--

यह हॉस्पिटल का दृश्य है यहां पे लोग वेटिंग रूम में यहां पर बहुत सी भीड़ जमा है कुछ औरतों ने साड़ी पहन रखी है।

प पंखे नजर आ रहे हैं लाइटिंग नजर आ रही है रिसेप्शन पर बहुत भीड़ है शीशे लगे हुए।

कुछ लड़कियां मस्ती कर रही हैं टीचर्स ने साड़ी पहन रखी हैऔर क्लास में बोर्ड लगा हुआ है बेंच पड़े हैं स्कूल बेलून लगे हुए हैं।

साइड में एक वाइट कलर की मशीन रखी है एक साइड में ऑरेंज कलर की और ब्लू कलर की मशीन रखी है इसमें वर्कर वर्क कर रहे हैं।

यहां पे हरी हरी घास लगी हुई है कुछ पेड़ पौधे हैं कुछ पानी है कुछ लोग सीढ़ी पे --

वहां पे एक सामने में बाइक खड़ी है लेट दुकानों के आगे उसके ऊपर होल्डिंग लगी हैकोका कोला लस्सी--

सामने में एक दुकान नजर आ रही है यह दुकान पे कुर्सीज लगी हुई है एक साइड पे बैठने के लिए बेंच लगा हुआ है एक स्टूल पड़ा है।

यह एक नाई की शॉप है यहां पे तीन कुर्सी लगी हुई है पंखा लगा हुआ है ग्रीन कलर किया हुआ है।

यह एक मॉल का दृश्य है यहां मॉल की ट्रॉली नजर आ रही है ट्रॉली में कुछ सामान रखा हुआ है।

कैबिनेट रखा हुआ है उसके इर्दगिर्द में दो चेयर रखी हुई है एक स्टैचू रखा हुआ है आई_बी के--

यह एक शॉप नजर आ रही है यह शॉप मोबाइल की नजर आ रही है यहां पे नोकिआ के मोबाइल रखे हुए हैं।

वीवो के मोबाइल नाइन एक्स लिखा हुआ है काउंटर पे बहुत से बॉक्सेस पड़े हुए हैं।

सामने में दो-तीन दुकानें नजर आ रही है दोनों तीनों दुकानों के शर्टर ओपन है एक में लिखा हुआ है रामा टेंट ये टेंट के दुकान है।

पेंट बाहर में लगा हुआ हैऑरेंज कलर का एक हैरिपेयर की दुकान यहां पे सको ठेकर की है।

यहां पे शेड पड़े हुए हैं बाहर में रेलिंग की हुई है कुछ पेड़-पौधे बाहर में लगे हुए हैं।

गेट का रंग रेड है और रेलिंग का रंग कलर ब्लैक है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

जो टेबल है वो कुर्सी के साथ में ही अटैच है सामने में एक फ्लैग सी लगी हुई--

अ पार्टीशन किया हुआ है या पार्किंग में बाइक लगी हुई है कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग आ जा रहे हैं।

यहां पे एक रूम नजर आ रहा है यह रिसेप्शन एरिया है यहां पे वेटिंग की जाती है।

यहां पे जो फ्लेक्सेस लगी हुई है उस पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है।

यह सामने में किचन नजर आ रहा है यहां पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे इसमें कवर बिछा हुआ है।

यहां पे रात का दृश्य है यहां पे फूल नजर आ रहा है फूल में जो लाइटिंग की है वो ब्लू कलर की है--

पानी बहुत साफ है यहां पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे नारियल का पेड़ नजर आ रहा है जो फ्लोर में टाइल हैवो वाइट। --

सेंटर में इन्होंने ट्रैक बना रखा हैचलने के लिए एक पिलर नजर आ रहा है बड़े पौधे नजर आ--

यह कॉफी नजर आ रहा है यह कंप्यूटर क्लासेस है यहां पे दीवार प एल_सी_डी लगी हुई है।

यहां पे छोटे-छोटे कंप्यूटर रखे हुए हैं दीवार पर ए_सी लगा हुआ है कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं।

यह सेल्फी पॉइंट है यहां पर कुछ दो लोग खड़े हुए सेल्फी ले रहे हैं।

पीछे मिरर में उनकी सेल्फी शो हो रही है पीछे में कुछ लोग बैठे हैं टेबल पर खाना खा रहे हैं अपनी बातों में लगे हुए--

सामने में एक रोड है रोड पर बारिश हुई हुई है बारिश का पानी पानी जमा है कुछ लोग सिग्नल पे वेट कर रहे हैं क्रॉसिंग का--

यह एक शोरूम नजर आ रहा है यहां पे कपड़े पीछे में टंगे हुए हैंगर पे यहां पे एक दम्मी खड़ी है।

डम्मी जेंट्स की है उसने रेड कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और ब्लू कलर की जींस पहन रखी है।

सामने में एक दुकान नजर आ रही है यह एक कॉर्नर है यहां पे वेंस लाइन आइसक्रीम का कॉर्नर है यह आइ --

यहां सामने में एक छोटा सा बच्चों का खिलौनों का रूम नजर आ रहा है।

और सामने गणपति जी की मूर्ति लगी हुई है मोटू पतलू की फ्लैक्सी लगी हुई है डोनल्ड डक की प्लै--

और फाई ब्रिगेड का ली फायर बुझाने का यंत्र रखा हुआ है पीछे में खिड़की नजर आ रही--

यहां पे सामने में रास्ता है रास्ते के ऊपर में एक इन्होंने ब्रिज नुमा लोहे की एंगलों से बना रखा है यह एक फैक्ट्री का दृश्य है।

यहां पे साइड में गाड़ी है आसमान का कलर बड़ा साफ नजर आ रहा है ब्लू --

पानी गुजर आया है एक पानी का झरना है कुछ लोग सर्दी के कपड़े पहनकर देख रहे हैं यहां पर पेड़ पौधे लगे।

कुछ लोग सामान देख रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं कुछ इधर-उधर घूम रहे हैं यहां पे पेड़ की छाऊ है धूप बहुत तेज है.